कचरा रखने वाला सामान है ससारने वाला चीज है बोडर --

स्कुल है तिरंगा है हरा-भरा पेड़ पोधा है बस स्टेंड है बस है।

पानी है खाने वाला सामान है मुजफ्फरपूर स्टेशन है।

बिजली बिल है नीला आसमान है पीला दीवाल है शटर है आ ईंटें हैं श दुकान है।

भगवान् सूर्य का मंदिर है ए_सी है कूलर है झाड़ू है।

भगवान बुद्ध का मंदिर है पेड़ पौधा है पानी वाला झरना है और नीला आसमान है।

नीला आसमान है। लाल-लाल दीवाल है। सड़क है।